रूम के अंदर घड़ी दिख रही है।

कुछ सामान दिख रहा है थैला टंगा हुआ दिख रहा है खिड़की दिख रही है।

सड़क दिख रही है सड़क में बहोत धूप रोशनी और छाया दिख रही हैं पेड़ दिख रहे हैं।

अह लड़कियां खड़ी दिख रही हैं स्टू अह टेबल रखा बेंच रखा हुआ दिख रहा है एक नर्स खड़ी हुई दिख रही है।

पेट्रोल पंप बहोत अच्छा दिख रहा है गाड़ी जा रही दिख रही है अंधेरा दिख रहा है बहोत सारा--

टेबल दिख रहा है दो आदमी खड़े दिख रहे हैं।

एक लड़की भी खड़ी दिख रही है।

बुक्स रखी हुई दिख रही हैं बहोत सारे बुक्स रखी हुई हैं।

और बहोत अ सुशाल ही लिखा हुआ दिख रहा हैं।